पानी के साइड में बहुत सारे पत्थर नजर आ रहे है उन पर एक पक्षी बैठा हुआ है व्हाइट कलर का समुन्द्र में एक जहाज जा रहा है।

जिसमे एक नाव रखी हुई है पानी लहराता हुआ आ रहा है पानी के दूर बहुत दूर एक पहाड़ नजर आ रहा है सूर्य अस्त होने को हैं आसमान में बादल भी हैं।

खरीदने ने के लिया आये हुए है दोनों ने बेग टांगे हुए है यहाँ पर एप्पल मैंगो तरबूज अंगूर ये सब फल है ।

यह बच्चो के खेलने के झूले हैं यहाँ बहुत से झूले लगे हुए है जैसे गोल घूमने का स्लाईड। --

यह एक पार्लर के अंदर का फोटो है।

इसी के बगल मे कुछ ठंडे की बोतले भी रखी हुई हैं।

यह एक रोड का फोटो हैं यह एक बहुत बड़ा रोड हैं रोड के बगल मे नदी बेह रही हैं रोड पर पानी भरा हुआ हैं।